इस रेलिंग सीढ़ी भी ब्लू कलर की है और अंदर में मस्जिद है यहां लोग नमाज़ शायद पढ़ते हैं और--

रात का माहौल है बहुत अच्छा लग रहा है आसपास काफी सारा अंधेरा भी है।

यहां पे बहुत सारे पेड़ हैं यहां पे कुछ जानवर भी होते हैं।

यह एक रोड है यहां पे टैक्सी है ग्रीन ब्लैक कलर की ऑटो एक फोर व्हीलर है ब्लैक कलर की।

एक ट्री है ट्री के बीच में से एक जी_टी रोड गई रास्ता पकि सी और यहां पर बहोत सारे पेड़ है बड़े बड़े।

पार्क के बाहर की लोकेशन है और।

ये ट्रैक्टर का शोरूम है यहां पे ब्लू कलर के ट्रैक्टर है।

ब्लैक कलर की खिड़कीएं हैं शीशे हैं ब्लैक कलर का सिल्वर कलर की पाईप है और --

यहाँ पे बोहोत सारे मन्दिर भी लग रहे हैं बोहुत ऊंचे-ऊंचे भी हैं पुराने से।

और यहां पेड़ भी है या कुछ लोग आते भी होंगे आते तो है वैसे भी यहां पर बहुत सारे लोग।

जेनरेटर है इनवर्टर जिसे कहते है और ब्लू कलर का इनवर्टर है।

फुब्बारा भी है और यहां पे अअ घर भी हैं व्हाइट कलर के--

भी लगी हैं घर पे और यहां पे कुत्ते मिकी माउस फेस की सब कुछ बने हैं। ग्रीन --

जो दीवाले हैं जो पुल है ये काफी पुराना है इसका कलर भी--

और एक इधर पानी बोहोत सारा भरा है और एक इधर कम भरा है।

यहां पे एक ब्लू कलर की छोटी सी कार है बच्चे की बेबीज वाली और यहां पर दो स्लाइड जीनें हैं।

यहां पे रेड कलर की दीवारे है यहां पे चॉकलेटी कलर का एक शटर है।

पेट्रोल डीजल रहते हैं यहां पे चार पांच बाइक हैं ग्रीन कलर की ब्लैक कलर की यहां पे कुछ लोग भी हैं।

यह एक सब्जी की दुकान है इसमें जैसे और यहां पे फूलगोभी हैं।